एक बड़ी सी दुकान है दुकान पर ढेर सारे मसाले व फ्रूटी व पानी की बोतल अन्य चीज रखी हुई है।

एक पीले रंग की बिल्डिंग है एक बोर्ड है जिसपे सोलर पैनल बना हुआ है। साथ ही में भारत माता की तस्वीर है।

साथ ही में ढेर सारे पिलर जिस पे रंग बिरंगे फूल हैंलाइटें लगी हैं।

कुछ बाइक किनारे खड़ी हुई हैं। बड़ा सा नीले रंग का बोर्ड है जिसमें किसी इंजन आयल का प्रचार किया गया है।